इस फोटो में मुझे बैड दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे सीनरी दिखाई दे रही है। जा

इस फोटो में मुझे लाइट की डेकोरेशन दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे महिलाएं दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे फूलों का गुलदस्ता दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे दो बेड दिखाई दे रहे है।

इस फोटो में मुझे पानी का पाइप दिखाई दे रहा--

इस फोटो में मुझे कूलर दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे बिजली के खंभे और तारें दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे--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

इस फोटो में मुझे महिलाएं पुरुष--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

इस फोटो में मुझे सोनार की दुकान दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे बहोत सारे लड़के लड़कियां और औरतें दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे किराना स्टोर की दुकान दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे रिक्शा दिखाई दे रहा है।